यहा उपरे अलग कति लाइट लगी हुई दिखाई दे रही है उपर छत् छत दिखाई दे रहा है नीचे कफ़ाच अलग करके दिखाई दे रहा है एक साइट अलग खुर्चिया रखी लगी हुई दिखाई दे रही है।